के पीछे हमें एक अमूल की दुकान दिखाई दे रही है जिसके नीचे पिज्जा भी लिखा हुआ है।

वो लड़का फोटो लेते हुए दिखाई दे रहा है फोटो में कांच दिखाई दे रहा है।

सामने एक टंकी बनी हुई दिखाई दे रही है।

सामने उसके एक टोकरे में हमे चारा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक काउंटर है जिसके ऊपर नेशनल ड्राई क्लीनर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है साथ में पेट्रोल पंप का स्टाफ पीछे पेट्रोल पंप ऑफिस भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें सामने एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब के पास में हमें एक शेड दिखाई दे रहा है। पीछे बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें सामने कार्ल्सबर्ग की अलग-अलग फ्लेवर की ड्रिंक्स दिखाई दे रही है ड्रिंक्स के पास में हमें --

इस फोटो में हमें कुछ टू व्हीलर दिखाई दे रही हैं कुछ ब्लैक कलर के दिखाई दे रही हैं कुछ ब्लू कलर के दिखाई दे रही हैं उनके ऊपर भारत के झंडे छोटे लगे दिखाई दे रहे हैं।

सामने हमे एक खम्बा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लाइट लगी हुई हैं।

बिजली के खम्भे हमें दिखाई दे रहे। बिजली के तार भी हमें लगे हुए दिखाई दे रहे।